इस दृश्य दिखाए जाने वाली तस्वीर एक मंदिर की प्रतित हो रही हैं यह मंदिर गया के बौध गया की मंदिर दिखाई दे रही है यह मंदिर देखने मे बहुत ही अद्भुत प्रतित हो रही है।

इस दृश्य मे दिखाए जाने वाली तस्वीर मानो नदी के ऊपर बनाई गई पूल की है।

इस दृश्य मे दिखाई जाने वाली तस्वीरबुद्ध भगवान की हैं इस तस्वीर मे बड़े छोटे कई तरीका के प्रतीमा को स्थापित किया गया हैं।